खदान हे पेड़ हे गाडी हे लाइट हे खिड़की दरवाजा हे आदमी हे फोटो खिचावत हे ।

सेलून दूकान ए चुंदी काटथे इहा ल कुर्सी हे टेबल हे लाइट हे कूलर हे अलमारी दिखत हे फिइरका दिखत हे अति झक आदमी खड़े हे।

अति झक मन नाचत हे पहाड़--

पूजा करे जाथे पंडित रथे नदियाँ हे पानी जहाज हे खिड़की हे दरवाजा हे चटाई हे पहाड़ हे।

चित्र हे चित्र बनात हे फुल के रंगोत हे खिड़की है दरवाज़ा हे बैग हे।